ये एक रूम है और इसमें मूर्ति बनी हुई है बहोत सारे।

ये एक पंडाल है दुर्गा पूजा का पंडाल और इसमें लोग --

और पानी बहोत ही प्यारा है‌। समुन्द्र भी बहोत ही गहरा है।

छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं बाल्टी में और इसके बाहर ईट बी --

और इसमें एक कॉपी रखा गया है और इस कॉपी को डालने के लिए एक पत्थर भी रखा गया है।

ये एक जिम क्लब है और इसमें लोग जिम करने आए हुए हैं और इसमें जिम करके अपना वजन कम करते हैं।